और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो काउंटर में है।

नदी का नाम नर्मदा है और उसकी नदी के ऊपर एक--

यहां पर एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

यहां पर एक लेंटर वाला मकान दिखाई दे रहा है उसके सामने तीन बच्चे हैं।

यहां पर एक नाउ यहां पर एक नाउ की दुकान है।

और यह मजार में हरी कलर के सामने पट्टी बनी हुई है।

और ये दुकान कपड़ों की दुकान है और उसके बाजू में एक ए_टी_एम है।

और नीचे चारा भी हरा कलर का लगा हुआ है। यहां पर कुछ इंसान जा रहे है।

पजामा वाइट है और कुर्ता पीला है और एक इंसान ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और जींस पहना हुआ है।